बाउन्ड्री से घेरा हुआ नजर आ रहा है और आस-पास हमे कई बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे है ये द्रश्या काफी खूबसूरत लग रहा है इसका आकार गोल है।

हमे एक बड़ा स बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग के आंदर हमे एक बैंक दिखाई दे रहा है साथ ही साथ गोल्ड-लोन के लिए भी एक बैंक दिखाई दे रहा है यहा पर हमे कई दुकान दिखाई दे रही है जिनके सट्टर गिरे हुए--

द्रीश्य मे हमे अलग-अलग तरह-तरह की मूर्तिया नजर आ रही है और यहा पर हमे कई साथ सजाबत के चीज भी देखने को मिल रहा है यहा पे हमे--